यह एक महिंद्रा शोरूम है जहां पर बहुत सारे स्कॉर्पियो बोलेरो लगे हुए हैं।

जिसमें बहुत सारे किताब रखे हुए हैं कॉपी रखे हुए हैं पेन रखे हुए हैं।

यहां पर बैलून भी लगा हुआ है।

यहां पे बहुत सारे लोग हैं ब्लू कलर की लाइट जल रही हैं।

यहां पर एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जोकि ग्रीन कलर का है।

और यहां तीन आदमी है जो की एक फोन से फोटो क्लिक कर रहा है ।

यह एक बिल्डिंग है जो की येलो और पिंक कलर की--

जो कि स्काई ब्ल्यू की टी_शर्ट पहना हुआ है।

यह एक शॉप है जहां पर बहोत सारे अलमीरे बने हुए हैं।

कुछ अलमीरे में बैग्स रखे हुए हैं कुछ में कापी किताब रखे हुए है।

ई फर्स का कलर क्रीम कलर का है ।

छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं।

बैठने के लिए मैच बनाया हुआ है जो कि रेड कलर का है।

और यहां बहोत सारे सूखे घास हैं।

और बहुत सारे टेंट हाउस बने हुए हैं जो कि ग्रीन कलर की है।

यह एक रोड का दृश्य है।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

यह एक शोरूम का दृश्य है जहां पर एक कार लगी हुई है।

छोटी छोटी गमले लगे हुए है जिसमें फूल हैं पौधे हैं।

एक एंबुलेंस लगा हुआ है।

एयर ल रखे हुए हैं जो की रेड कलर की है।

यहां छोटे छोटे पौधे भी लगे हुए है ग्रास भी हैं ।

यह एक नदी है जिसके सामने बहोत सारे पत्थर हैं।

यहां एक ड्रम भी रखा हुआ है टायर रखा हुआ है।

और यहां एक आदमी का परछाई भी दिख रहा है जो फोन से फोटो क्लिक कर रहे हैं।

यहां पर बहोत सारे ब्राउन कलर के परदे लगे हुए हैं।